इस इमेज में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है ये कोई दरिया हो सकता है या फिर ये कोई नदी हो सकती है।

यहां पर कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं और यहां पर एक दरिया के जैसा कुछ नजर आ रहा है ।